जिसमें सभी ने मास्क लगाया हुआ है और ये कोई कट्टा अंदर ले जा रहा है कोई कट्टा ठेले में से उतार रहे हैं।

वगैरह लगे हुए हैं जो कि मिरर में सेब लगा रखे हैं।

यहां पर बीचो बीच एक महाराजा की--

इसका दरवाजा लोहे का है जो की खुला हुआ है और सामने की तरफ दीवार पर एक पाइप जाता हुआ नजर आ रहा है।

इसमें इंडियन पेट्रोल पंप की तस्वीर है जिसमें एक व्हाइट कलर की बिल्डिंग नजर आ रही है।

यहां पर मारुति सुजुकी की कार्स मिलती है यहां पर बाहर में बहोत सारी कारे लगी हुई हैं।

उसके अलावा यहां पर बहोत सारी दवाईयों की बोतलें रखी हुई है।

गाड़ियां खड़ी हुई है यहां पर कोई है कोई वैन है।

छोटी कार है यह अलग अलग कलर की कोई ब्लैक कोई व्हाइट कोई ग्रे में है।

इसमें हार्ट बना है जिसमें लाइट जलती हुई--

ये एक गार्डन की फोटो है जो किसी कैंपस की गार्डन है।

इसमें छत का काम चलता हुआ नजर आ रहा है।

के अलावा यहां बहोत से आदमी खड़े हुए नजर आ रहे हैं एक व्हाइट कलर का बोर्ड लगा हुआ नजर आ रहा है।

ये एक रेलवे स्टेशन की फोटो है।

जहां पर छत का काम करते हुए कुछ बहुत सारे आदमी नजर आ रहे हैं।

और पास ही शोकेस में बहहोत सारी ट्रॉफीयाँ रखी हुई नजर आ रही है और एक गमला है जिसमें छोटा सा पौधा लगा हुआ नजर आ रहा है।

और यहां पर अंदर की ओर एक कार खड़ी दिखाई दे रही है उसके अलावा एक आदमी है जो अंदर की ओर जा रहा है।

यहां पर बहोत सारे लोग आदमी है औरतें है जो खड़े हुए है और कुछ आदमी औरते आपस में बातचीत करते हुए नजर आ रहे --

और रैक में कुछ लडडू हैं कुछ गुलाबजामुन है कुछ रसगुल्ले हैं कुछ अलग अलग तरह की मिठाइयां रखी हुई नज़र आ रही है उसी के ऊपर --

तराजू रखा हुआ नजर आ रहा है उसके पास मडब्बे नजर आ रहे हैं जिसमें कुछ लॉलीपॉप रखी हुई है उसी के पास में ब्रेड के पैकेट है।

यहाँ पर बहोत सारी गाड़ियां पार्किंग में लगी हुई हैं यहाँ पर कुछ आदमी अंदर जा रहे है कुछ आदमी बाहर आ रहे हैं।